ऊपर एक काफ़ी लम्बा और थोड़ा कम चौड़ाई का हॉल दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक साइड की दीवार पर लंबे-लंबे बड़े-बड़े शीशे लगे हुए हैं जिसके सामने कुछ लकड़ी के रैक निकले हुए हैं।

जहाँ पर कुछ सामान रखा हुए है इस शीशों के ऊपर दो ट्यूब लाइट लगी हुई है दूसरे तरफ की दीवाल में एक लकड़ी का रैक है जिसके ऊपर टी_वी लगी हुई है पीछे के दीवाल पर भी एक बड़ा शीशा लगा हुआ हैं।

कॉफ़ी की दुकान काफी बड़ी है और काफी अच्छी दिखाई दे रही है इसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है जो की कॉफ़ी बेचता हुआ नजर आ रहा और बाहर दो आदमी कॉफ़ी पीते हुए नजर आ रहे हैं बाहर पीले रंग का काउंटर दिखाई दे रहा हैं।

एक आदमी कुर्सी में पर बैठा हुआ जिसने लूंगी लागा रखी है पीछे दो बडे-बडे टैंक रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जो की प्लास्टिक के है ये आदमी मछलियों को बेचता हुआ नजर आ रहा है।

शाम का समय है सूरज ढलता हुआ दिख रहा है ये दो लोग अपने हाथों से सूरज की तरफ़् इशारा करते हुए फोटो खींचाते हुए दिख रहे हैं दूसरे तरफ घु कुछ झाड़ उगे हुए दिखाई दे रहे हैं नदी का पानी कफ़ी दूर तक दिख रहा है काफ़ी सुंदर दिख रहा है।

हरे नीले लाल रंग की जल रही है नीचे बुक सेंटर खुला हुआ दिखाई दे रहा है जिसके बाहर कई सारे कैलेंडर ख ख ख टंगें हुए दिखाई दे रहा है तीन-चार आदमी खड़े हुए किताबें खरीद रहे हैं।

बिल्डिंग काफ़ी अनोखे तरीके से बनाए गए है इसके उपरी भाग में दोनों तरफ दो लड़कियों के चित्र लगे हुए है जिन्होंने हाथ जोड़े खरे हुए है नीचे की तरफ काफ़ी डमी लगी हुई है जिस पर काफ़ी सारे कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक बड़ा सा सलोन दिखाई दी रहा है जिसके बाहर का हिस्सा दिखाई दी रहा है सेलून काफी बड़ा है थोड़ी ऊंचाई पर बनाया गया है इस क लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं बाहर की तरफ तीन बाइक खड़ी हुई नजर आ रही हैं जो की अलग अलग तरह की हैं क्योंकि--

नीले रंग के कपड़े पहन रखे है यह किसी एक जगह के अंदर पर ड्रिल करता हुआ दिख रहा है बाहर कुछ हथौड़ा और लकड़ी पड़ी हुई दिखाई दे रही है और कुछ रस्सियों का गट्ठा भी पड़ा हुआ है।

इन लड़कियों ने नीले और लाल रंग की साडी पहन रखी है और काफी ज्यादा मेक अप किया हुआ है बालो में गजरा लगा रखा है पीछे की तरफ मूर्तिया बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

पर एक बड़ा सा बुक स्टॉल दिखाई दे रहा है जिसमें बाहर के तरफ काफ़ी सारे पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे है बुक स्टॉल के अंदर एक औरत बैठी हुई है जो कि किताबे बेचती हुई नजर आ रही है इस--

यहाँ पर किसी घर या किसी बिल्डिंग के ऊपर छत की ढलाई का काम चल रहा है अ बहुत सारे छड़ छत पर जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और जिनके बीच में बिज--

--पर फूलो की दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक आदमी टेबल पर बैठा हुआ है इसने नीले रंग की लूंगी लगा रखी है और सफेद रंग के बनियान पहन रखी है ।

यहाँ पर तीन चार काउंटर बनाए गए है जिसमें से लेडी का सामान दिया जाता है ये काउंटर लकड़ी के बने हुए हैऔर इनका ऊपर कांच लगा हुआ दिख रहा हैं ।

यहां पर एक बड़ा सा मछली बाजार दिखाई दे रहा है जहां पर लाइन से मछलियों की दुकाने लगी हुई है हर किसी के पास अलग-अलग तरह के मछलिया दिखाई दे रही हैं और--

हर किसी के पास छोटी बड़ी मछलियां भी रखी हुई है इस बाजार में काफ़ी ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है दो औरते मछली को छांटते हुए दिखाई दे रही एक औरत फोन पे बात करती हुई नजर आ रहे हैं दो आदमी इधर उधर जाते दिख रहे हैं।